एक बहुत बड़ा तालाब है जिसका पानी नीला दिखाई दे रहा है एक साइड में मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के सामने एक लाल कलर की छोटी- सी मढ़िया दिखाई दे रही हैं।

बड़ा सा रूम है उसमे एक एल. सी.डी. लगी हुई है बहोत सारी टेबल्स लगी हुई है।

--तीन आदमी दिखाई दे रहा है एक आदमी कुछ बेच रहा है एक बैठा हुआ है कुछ मोटर साइकिल और स्कूटी खड़ी हुई है।